उसके पीछे ढेर सारी गेंदा फूल है।

इस बच्चे ने अपने गले मे एक रस्सी का --

और इसके आगे ही लिखा हुआ है पार्किंग फॉर बाईक्स जहां पे लिखा है कि सिर्फ वहां पे बाइक को पार्क करना है।

ओर उसके ठीक नीचे हैं नदी हैं नदी में डेर सारे पत्थर भी नजर आ रहे है और उसके बगल में डेर सारा पेड़ पोधै।

और यहां के बहोत सारे दरवाजे खुले हुए हैं।

ये मुझे एक बड़ा सा सुंदर सा बिल्डिंग नजर आ रहा है।

बिक्री कर रहा है और उसके--

फेडरल बैंक जो कि बैंक है और उसके बगल में ही एक रोड है जिस रोड पर किसी ने अपनी सफेद रंग की गाड़ी रखी हुई है और उसके ठीक आगे दो बूढ़े साथ में चल रहे हैं और उनके--

प्लास्टिक के पर्दे रखे हुए हैं।

यहां पर छोटे छोटे रास्ते हैं पीछे ढेर सारे पेड़ हैं पौधे हैं।

उसके के बगल में जहां लोग रुकते हैं वहां छाया जो की टीन से बना हुआ है।

पेड़ की डॉलिया भी नजर आ रहा है।

नीला रंग का घर है।

यह एक मर्दों का दुकान है क्योंकि इसमें लड़को का जैकेट लड़को का टी शर्ट लड़को का जर्सी ये सब नजर आ रहा है औरतों का यहां से कुछ संबंध --

है जोकि कुछ सफेद रंग का है तो कुछ पीला रंग का और ढेर सारे नेटवर्क के टा टावर भी मुझे नजर आ रहा है।

ऊपर ही एक बड़ा सा ब्रिज भी है।

जो की सफेद लाल रंग का है।